वी_आर विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वी_पी लैबोरेटरी --

और रेड-रेड कलर कर दिए गए हैं साइड में कुछ गार्डन-गार्डन टाइप के बना दिए गए हैं जिसमें छोटे-छोटे पौधे वोधे लगा करके रखे गए हैं।

और बहोत सारे डंबल रखे हुए हैं। नीचे पे ग्रीन ग्रीन कारपेट बिछाए गए हैं। मार्बल है।

पोल है पोल पर काफी लाइट है एक ब्रिज टाइप का बनाया गया जिसके नीचे से पानी बाहर जा रहा है।

इक खिलौने का छोटा सा सॉप दिखाया गया जिसमें बहोत सारे खिलौने रखे गए हैं बहोत सारी ट्रॉफियां रखी गई है।

उम्म ओ के ऊपर में रखा गया काफी सारे पीछे में रंग बिरंगे पर्दे टाइप के लगाए गए हैं जो कि येलो में पिंक में है राइस लाइट है।

एक घर दिखाया गया है जिसके बाहर पर एक ए_सी का डक्ट लगाए गए हैं। तार वार है। एक खिड़कियां है लोहे के।

ग्रिल टाइप के कर दिए गए हैं और अंदर में प्लाई के टाइप के गेट दिए गए हैं।

एक छत दिखाया गया जो की काफी बड़ा है उसमें बहुत सारे लड़के वड़के हैं जो बैठे हुए हैं।

और बेल रेड कलर कर दिये गये है दो लोहे के दरवाजे दिये गए जिसमें बाहर प--

एक कारखाना दिखाया गया है जो की काफी पुराना दिखाया जा रहा है एक बहोत बड़ा सा टावर दिखाया जा रहा है बहोत सारी तार दिखाई जा रही है।